इस वीडियो में चौबीस का तिथवे महावीर जैन धर्म का मंदिर है और उसमे दे-अ जैन धर्म की --

पास में एक सड़क है सुन्दर सी उस पर कुछ छात्राएँ साइकिल से जाती हुई दिख रही हैं वहाँ एक --